एक सामने को काफी बड़ी शॉप है और ये बराबर में पेड़ है एक साइकिल खड़ी है।

यहां पर एक शटर लगा हुआ है। शटर के ऊपर राइट केयर --

छोटी छोटी दुकाने सी दिखाई दे रही हैं यहां पर कि काफी सारी भीड़ है।

ब्राउन कलर का कलर हो रखा है एक आदमी बाहर को है उसके हाथ में थैला टंग रहा है।

उम कुछ रखा हुआ है गोल गोल सामान एक लड़का दिख रहा है।

एक स चैनल गेट लगा हुआ है जिसके बराबर में सीढियां जा रही हैं।